और आसमान भी दिख रहा है एक बोर्ड भी दिख रहा है।

एक जीसस की तस्वीर भी दिखाई दे रही ह।

और यहां पे शीशे का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है और एक बाइक भी दिख रही है।

हम पर बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का रंग लाल--

लाल रंग की चेयर्स भी दिख रही है और शीशे के टेबल भी दिखाई दे रहे--

सरिया भी दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

दीवार दिखाई दे रही है दीवार पर लाइट्स की रोशनी दिखाई दे रही है।

यहां पर आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पर शॉप दिखाई दे रही हैं।